और पीछे एक लाइट है पास में दीवार है उसके दीवार के नीचे एक तस्वीर है तस्वीर फर्श का --

यह फोटो शायद किसी कैंप का है।

यह फोटो हम देख सकते है ऐसा हमें आ इंडियन ऑफिस इंडिया ऑफिस पे दिखाई देता है।

टेबल के ऊपर कुछ रखा हुआ है सामने ए.सी. है।

एवं कुर्सियां दिखाई दे रही हैं उसके बाहर में कांच के बाहर एक कार है जो की खड़ी हुई है |

यह फोटो किसी खेत का है जहाँ पर --

कुछ बैलून दिख रहे हैं हमें आ लेफ्ट - राइट साइड में --

ब्राउन कलर की फर्श है उसके पास में एक कार्ड-बोर्ड है सफेद कलर --

यह फोटो एक प्लेग्राउंड का है।

यह एक व्यक्ति ने ब्लू कलर की शर्ट पहनी हुई टी-शर्ट पहनी हुई है।